जहां पे रेलिंग लगे हुए हैं सीसे के दरवाजे भी हैं।

जिस पे भी उर्दू में लिखा हुआ है।

सीलिंग पे फैन भी नजर आ रहे हैं।

इस पर लड़ी लगी हुई है जो ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई दे रही है।

और लाइटें भी लगी हुई है नीचे सोफा रखे हुए हैं।

दीवार पे टी_वी भी नजर आ रहे हैं।

दृश्य में एक झील दिखाई दे रही है जहां पे पानी नजर आ रहा है।

यहां पे एक ऑटो जाती हुई नजर आ रही है।

एक साइकिल आता हुआ दिखाई दे रहा है ।

फिरोजी कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और खिड़की भी नजर आ रहे हैं जिसपे परदे लगे हुए हैं।

जिसपे बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और पानी के बीच में थोड़ा मिट्टी का घेराव है।

और डमी भी दिखाई दे रही है।

उसके बगल में एक छोटा सा बैनर है उसपे आधार लिखा हुआ है।